बच्चे लोग नहीं सिर्फ हम लोग भी झूल सकते | यहाँ बच्चे लोग भी झूल रहे हैं कितना अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे देखिए झूलने वाला कितना अच्छा व्यवस्था बनाया गया है |

यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये पार्क का डिजाइन बनाया कितना मस्त बन रहा है यहाँ हर चीज़ का तस्वीर बनाया जायगा इधर रोड है इतना मस्त पथरीला रोड है बगल से साइड से रोड गया है।

इतना सुंदर-सुंदर पौधा है ना यहां देखने में क्या तारीफ करूं हर चीज अच्छा लग रहा है देखने में बहुत सुंदर --

बहुत पुराना है | यह बनाया हुआ है | बहुत पुराना इतना अच्छा है मत पूछिए बहुत भयंकर है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत |

इसमें आदमी लगता है कोई इधर सो जा सकता है | बहुत बड़ा है लंबा है ये | इधर से भी देख सकते हैं उधर से भी देख सकते हैं बहुत सारा |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

यह नजारा है देखने वाला कितना मस्त नजारा है आप लोग के भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये नजारा देखने के लायक --

इतना अच्छा है आप लोग भी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा-ऐसा नजारा होता है लेकिन हम कभी नहीं सोचे थे लेकिन देखने में बहुत बढ़िया लगता है बहुत अच्छा नजारा है आप लोग भी देख सकते है।

भयंकर है कपड़ा कि इतना मस्त है की मत पूछीए देखिए यहां पे कितना सारा भीड़ लगा हुआ है बहोत सुंदर लग रखा है।

यहाँ पर सैलून है और सैलून में काफी भीड़ | इतना अच्छा सैलून है कि मत पूछिए बहुत बढ़िया सैलून है ।